चादर है और टाइलस भी लगा हुआ है।

यह व्यायाम शाला है यहाँ हरा-भरा है मस्त पेड़-पौधे है और बगीचा है यहाँ तीन चार आदमी झूला झूल रहे है एक आदमी काला कलर का कपड़ा है दूसरा सफ़ेद का है।

यह का पुल का फोटो है जोकि नदी का पुल है बगल में बहोत सारे घर बिल्डिंग दिख रहे है और यहाँ लोहा का रेलिंग दिख रहा है और नदी का उम्म आ पानी का कलर में मिट्टी-मिट्टी दिख रहा है।

यह एक पेट्रोल पम्प का पिक्चर है जहाँ दो तीन आदमी दिख रहे है और एक गाड़ी में पेट्रोल डला रहा है पीछे में पेट्रोल का ट्रक खड़ा हुआ है एक पेड़ है जोकि मस्त हरा-भरा दिख रहा है।

यह एक दूकान का पिक्चर है यहाँ बहोत सारे सामान रखे हुए है यहाँ पेन है कलर है और खाने का भी सामान है और सा कलरफुल है सब--

जो है पानी बहोत सारा है और इस खम्बे मई सफेद का बहोत सारा सामान लगा हुआ है और बहोत लम्बा खम्भा है बगल में भी एक बिल्डिंग है।

यह एक दुकान है यहाँ बहोत सारा खाने का रखा है यहाँ एक पेटी है जिसमे कांच लगा हुआ है एक टेबल है और एक तराज़ू है और अंडा है मैग्गी है।

यह रेलवे स्टेशन का फोटो है यहाँ बगल मे दो ट्रैन खड़े हुए है आदमी के बैठने का इंतेज़ाम भी किया गया है टाइल्स लगा हुआ है दो पटरी है ऊपर मे टीना लगा है बहोत सारे तार दिख रहे है।